यहा पर विधार्थी सभी सब के मनोरंजन के लिए अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं काफी अच्छी एकेडमी है।

यह एक रोड का सीन के सामने लक्ष्मी होटल है| ऊपर पोस्टर भी कोका-कोला का लगा हुआ है।

ताकी बच्चे कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाए और अच्छा करे अच्छा पार्टिसिपेट करे और उन्हें इसका लाभ भी हो।